यहाँ मॉल दिख रहा है। यहाँ बर्तन दिख रहे हैं।

एक छोटी बच्ची भी है। बहोत सारी लइटिंग्स हुई हैं।

नदी दिख रही है। रास्ता दिख रहा है। रोड पे तो --

मिठाई की शॉप दिखाई दे रही है।

और लाइट्स दिख रहे हैं और उसपे टाइल्स लगे हुवे दिख रहे हैं।

आदमी भी दिख रहा है आसमान दिख रहा है जो साफ है बिलकुल --